और यहां पर यह लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं।

सामने इस तस्वीर में कुछ जंगल नजर आ राहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक वर्कशॉप नजर आ रहा है।

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसका कलर लगभग काला सा है और यहां पर लिखा हुआ है उत्तर मध्य रेलवे ।

और यहां पर बहोत सारे ऊपर छत की तरफ सितारे लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ युवतियां डांस भी कर रही हैं।

साड़ियों का कलर लगभग नीला नीला हरा लाल और ज्यादा नीला है।

जिसमें से दो ट्रक हैं और एक ट्रैक्टर है और कुछ मोटरसाइकिल है।

और यहां पर सभी टेबलों के ऊपर कुछ पानी की बोतलें और गिलास भी रखे हुए हैं।

जिसके आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जो शायद कोई रंग बिरंगी रंग रंगोली बना रहे हैं।

और यहां पर बहोत सारा एरियो में जो बना हुआ है उसके ऊपर चादरें लगी हुई है।

और यहां पर बहोत सारी टेबलें डली हुई है बच्चों के पढ़ने के लिए--

खिड़कियों में अधिकतर कांच लगे हुए हैं।

और यहां पर हेरे कलर की नीचे जाली भी लगी हुई है।

और यहां पर शायद कमल के फूल के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर ते बहुत सारी कुर्सियां डाली हुई हैं।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

और यहां पर बेड पर कुछ फूल पत्तियां भी डली हुई हैं।

मुझे ये किसी सरकारी विद्यालय का बाहर का हॉल दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर एक लाइट का मीटर भी लगा हुआ है।